सोफे पर एक पंजाबी बैठा हुआ नजर आ रहा है रिसेप्शन पर पीले रंग का फ्रॉक पहने एक लड़की खड़ी दिखाई दे रही है।

ट्रेन के ऊपर के छत पीले रंग की है।

यहां पर तीन मोटरसाइकिल नजर आ रही है।

पेड़ नजर लिखा हुआ लाल रंग का स्टिकर दिखाई दे रहा है।

येह तस्वीर एक जंगल की नज़र आ रही है जहाँ पर दो हिरन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बहोत सारे--

यह तस्वीर जनसेवा अस्पताल की नजर आ रही है जिसके बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है।

सफेद रंग की गाड़ी दिखाई दे रही है।

की ठंडी हवा जाने वाला एक बहोत बड़ा पाइप दिखाई दे रहा है।

और साथ में एक सफेद रंग की घड़ी भी दिखाइ दे रही है मैट का रंग--

यह दृश्य दिवाली का दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धर्मशाला की दिखाई दे रही है यहां पर--

अभी लाल रंग का गेट चढ़ा हुआ है और यह अंडर कंस्ट्रक्शन नजर आ रही--